जिसमें अंदर लोग पूजा कर रहें हैं आगे मंदिर है बहुत सारी दुकानें हैं जो की डालकर बनी है बहुत से लोग घूम रहें हैं यहाँ पहाड़ है।